बे एक गाडी के ऊपर कुछ वाध्य वाध्य यन्त्र रखे दिखाई दे रहे है सड़क दिख रही है।

एक पीला स्टूल दिख रहा हैं सफ़ेद दिवार दिख रही हैं लाल पर्दे दिख रहे है।

इस चित्र मे किसी मैदान में दो बच्चे जाते दिखाई दे रहे है सामने बिजली के खम्बे पेड़ दिख रहे है आकाश दिख रहा है।

सामने कुछ वाहंस दिखाई दे रहे है हरे घने पेड़ गुलाबी बिल्डिंग दिखा रही हैं।

चित्र में एक बस अड्डा दिखाई दे रहा है जहाँ कई बसे रिक्शा दिख रहे है कुछ लोग दिख रहे है।

-- में एक मैदान में कुछ कारे और एक ऑटोरिक्शा दिख रहा है।

छत दिख रही है चबूतरा दिख रहा है।